है कुछ साइकिलें नजर आ रही हैं एक मोटर साइकिल से जाता हुआ --

पानी इकट्ठा नजर आ रहा है --

जैसा लगा हुआ है जमीन मे कुछ कोड़े भी पड़े --

भी है लकड़ी का एक रैक बना हुआ है उस पर।

इस तस्वीर में एक बड़ा बगीचा नजर आ रहा है बगीचा --

के पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

बड़े-बड़े खेत जैसा नजर आ रहा है यह बहोत ही हरा-भरा है।

सफ़ेद रंग का है मंदिर के आसपास कुछ मकानें भी हैं मंदिर के बाहर खुले जगह है।

यह तस्वीर किसी जिम की है।

पानी का एक वाटर कूलर नजर आ रहा है दरवाजा नजर आ रहा है।

पास ही एक स्टूल रखा है उसके ऊपर एक बैग रखा है खिड़की भी नजर आ रही है।

एक आदमी बाहर खडा हुआ नजर आ रहा है ए.टी.एम. के ऊपर एक बैनर लगा है।

पर स्टेट बैंक ए.टी.एम. लिखा हुआ है शीशे का गेट लगा हुआ नजर आ रहा है।

यह एक कमरे में रखा हुआ है।

यह लोग रंगोली बनाते हुए नजर आ रहें हैं।

इस तस्वीर में कुछ मकानें नजर आ रही है आस-पास कुछ दरख्त भी हैं।

बाढ़ आया हुआ लग रहा है ऊपर आसमान नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में सामने एक बड़ा चर्च नजर आ रहा है।

एक मकान नजर आ रहा है मकान के ऊपर इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।

दो मोटर साइकिलें नजर आ रही है आसपास बहुत सारे दरख़्त भी हैं।

नजर आ रहे हैं सामने एक बड़ा बिल्डिंग है व सफ़ेद रंग का है।

इस तस्वीर में कुछ आदमी नजर आ रहे हैं।

झोपड़ी बनाए हुए हैं यह लड़कियां पेपर --

इस तस्वीर में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

लड़के के पिछे बहोत सारी एक्सरसाइज करने के लिए मशीने रखी नजर आ रही है।

यहाँ बहोत बड़ा फल का दुकान है जिसमें जरूरत के सब फल मिलते हैं और खरीदने जाते हैं और --

में पीछे बहुत सारे मजदूर नजर आ रहे हैं मजदूर के सर पर पीले रंग का हेलमेट लगा हुआ है।

किसी शादी की है इसमें एक दूल्हा नजर आ रहा है दूल्हे शेरवानी पहनी --

किताब कॉपी व बैग रखी हुई है।

उस पर बिजिली के तार लगे हुए हैं एक आदमी --

हरे-हरे पौधे लगे हुए है आस-पास बहुत सारे दरख़्त भी नजर आ रहे है एक टॉवर नजर आ रहा है।

खुला मैदान नजर आ रहा है किनारे बहुत सारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं।

सीढ़ियां नजर आ रही है पीछे दरख --

दुकान के बाहर एक आदमी एक औरत खड़े है।

छोटे-छोटे घास हुगे हुए हैं कुछ भी --